यह एक ट्रे है ट्रे में जलेबी है।

ये एक रूम है बहोत सारी तकिया है बेड है सोफा है डाइनिंग टेबल है।

बहोत सारी पौधे हैं घास फूस है।

ये एक में अस फूलों का मंडी है बहोत सारी अलग अलग फूलें हैं बहोत सारी लोग हैं।

यह एक बुक स्टोर है हम बहुत सारी अलग अलग बुके हैं।

यह एक मूर्ति का ये दुकान है।

और एक को गनेश भगवान टाइप कुछ मूर्ति दिख रहा है एक लाल थैला है खिड़की है।

और बहोत सारी लोग है और यहां कुछ बैठने की जगह भी है।

यहाँ बड़ी बड़ी बाजा है और बहुत छत्तीसगाड़िया ले लेडीस मन में कुछ तो छत्तीसगाड़िया साड़ी पहनी हुई है और बहुत सारी लोग हैं।

यह एक गार्डन टाइप कुछ दिख रहा है बड़ा बड़ा पेड़ भी है।

यह कैफे टाइप कुछ है और बहुत सारी--

क कपड़े भी है और इसको क्या बोलते हैं नहीं पता।

और पीछे में बिल्डिंग भी हैं एक गैरेस्टेप कुछ है।